और यहां पर तार लगे हुए हैं तथा तहसील के पीछे टंकी लगी हुई है।

यहां पर एक मेले के बारे में दिखाया जा रहा है इसका गेट दिखाया जा रहा है।